ऊपर दिए गए पिक्चर में आसमान दिख रहा है।

इस पिक्चर में पैर दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में एक गाड़ी दिख रही है।

इस पिक्चर मे एक बिल्डिंग दिख रहा है।

इस पिक्चर में पैर दिख रहे हैं।

ऊपर दिए गए पिक्चर में बिल्डिंग दिख रहा है।

ऊपर दिए गए पिक्चर में एक बिल्डिंग दिख रहा है।

इस पिक्चर में कुछ लोग दिख रहे हैं।

ऊपर दिए गए पिक्चर में एक वाइट कलर का कमरा दिख रहा है।

ऊपर दिए गए पिक्चर में पैर दिख रहे हैं।

ऊपर दिए गए पिक्चर में बिल्डिंग दिख रहा है।

इस पिक्चर में मिट्टी दिख रही है।

इस पिक्चर में टेबल दिख रहा है।

इस पिक्चर में लाल रंग का फूल दिख रहा है।

इस पिक्चर में एक व्हाइट कलर का घर दिख रहा है।

इस पिक्चर में पानी दिख रहा है।

ऊपर के गए पिक्चर में पैर दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में पानी दिख रहा है।

इस पिक्चर में कुर्सी दिख रही है।

इस पिक्चर में एक दरवाजा दिख रहा है।